इस दृश्य में बहोत सारे आदमीन दिख रहे हैं।

इस दृश्य में कई सारे आदमीन भी दिख रहे हैं।

दृश्य में बहोत दूर तक टाइल्स दिख रहा है।

इस दृश्य में कुर्सी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में करेट दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक पेड़ दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा घर है घर का कलर व्हाइट है।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा घर है।

इस दृश्य में दो तीन पंखे भी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में कई सारे खिड़की भी दिख रहे हैं।

दृश्य में एक बहुत बड़ा बंगला है।

ढलांग में बहुत सारे आदमीन दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक खिड़की भी है।

इस दृश्य में बैलून भी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक पंखे भी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक बाइक भी लगा हुआ है।

इस टाइल्स का कलर व्हाइट है।

इस दृश्य में दीवार का कलर व्हाइट है।

घर का कलर पिंक है।

इस दृश्य में बेंच है।

इस दृश्य में एक बस है।

इस दृश्य में बस के आगे तिरंगा बनाया हुआ है झण्डा --

इस दृश्य का बस का चक्का भी दिख रहा है।

दृश्य में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

दृश्य में कई सारे बाइक दिख रहे हैं।